अर-- दरवाजा लग रहा है एदो हम बाहर में बोर्ड लगा है बाहर में मोटर साइकिल आए है बाई--

इतना मस्त फ्लौर शीशा है एदम ए _सी जैसे है एदम एक नंबर उसमे जाते दम हवा लगता एदम ए _सी तरह एदम--

उसमें नाहता ता एक बार ह नाम लेता उस तालाब था उसे ऊपर मे धूप भी गजब है और पेड़ भी गजब है ऐसा पानी ऊपर से फेंक रहा हैं को काहे --

रेल का पटरी हैव एदम पर पूल में नीचे एदम दीवार खड़ा हो उधर एदम पेड़ ओड़ देखा रहा है बादल मस्त अन देखा रहे है और लोहा का बना है वो मस्त --

दिवार बन रहा है दीवाल बनाया उसमें गुसरता मस्त अन ऊपर में ग गजब दू छत का बना है।